ऊपर शेड डला हुआ है साइड में एक बगीचा है उसमें--

बस खड़ी हुई है।

यहां पर बहुत से लोग--

इस पार्क में बहुत सी घास है।

पीले और नीले रंग का है।

यहां पे बच्चे सफेद रंग की यूनिफॉर्म पहने खड़े हैं।

यहां पर बहुत से पौधे--

जो कि लाल रंग की--

पीछे बहुत सी बिल्डिंग बनी हुई--

ग्राहक सेवा केंद्र लिखा हुआ है।

यह नर्सरी के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है गार्डेनिका नर्सरी लिखा है।

और लाइटें भी हैं।

यहां एक रोड है।

टेबल और चेयर भी है।

तीन बच्चे खेल रहे हैं।

दो लोगों की तस्वीर लगी हुई है।

यह सब्जी का खेत है यहां बहुत से सब्जी के पौधे लगे हुए हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का--

यह लाल रंग का है।